घर में हमको दो खिड़कियां दिखाई दे रही हैं और खिड़कियों में से डोरियां जाती हुई भी दिखाई दे रही हैं और घर में नीचे आईड साइड में यहाँ दीवाल उठी दिखाई दे रही है और नीचे यहाँ बोहोत सारा फर्श दिखाई दे --

यहाँ हमको एक मस्जिद ही दिखाई दे रही है। यहाँ भी डब्बे-डब्बे वाली रो बनी हुई दिखाई दे रहीं है।

यहाँ हमको एक मस्जिद दिखाई दे रही है जो वाइट कलर से पुति हुई दिखाई दे रही है।